और सामने की तरफ बहोत सारी कुर्सियां भी--

और पीछे के तरफ लाइट जल रहा है।

और ऊपर की तरफ बहोत सारे मटेरियल दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे एक छोटा सा कमरा दिखाई दे रहा है।

और एक लोहे का पंप भी दिखाई दे रहा है।

जहाँ मुझे लोहे का रेलिंग भी दिखाई दे रहा है।

बाउंड्री किए हुए हैं और यहां पर एक बिजली का खंभा भी दिख रहा है।